यह इंस्टिट्यूशन में बहुत दूर-दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ।

यह बैंक का नाम एच.डी.एफ.सी बैंक है।

और यहाँ पर कबड्डी --

यहाँ पर प्रति एक दिन भीड़ होती है।

और यहाँ पर मेरिज करने के लिए भी होटल बुक की जाती है ।